बहोत सारी लाइटें भी की गई हैं और यहां पास एक से दो लोग--

लाल कलर का है साथ में यहां अलग अलग तरह की पत्तियां भी इसमें लगी हुई है और इसे एक इंसान हाथ मे पकड़ा हुआ है साथ में यहां बहोत छोटे छोटे गमले भी रखे हुए है।

छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं चारों ओर बहुत सी तार बाउंड्री की गई है और यहां एक छोटा सा तालाब भी रखा हुआ है।

इस फोटो में मुझे बहोत सारी कुर्सी दिखाई दे रही हैं यहां पास एक इंसान बैठा हुआ है।

डूब रहा है और यहां पास छोटी छोटी घास भी लगी हुई हैं और रोड के साइड में--

इस फोटो में मुझे एक बैंक दिखाई दे रहा है जहां पास एक इंसान फॉर्म भरा है और बहोत से लोग बैठे हुए हैं।

इस फोटो में मुझे एक कपड़ों की दुकान दिखाई दे रहा है जहां पास अलग अलग कपड़ों को एक स्टैंड के ऊपर रखा गया है नीचे के साइड में--

और यहां पास तीन से चार पेड़ भी लगे हुए हैं साथ में यहां--

इस फोटो में मुझे बहुत सी कपड़ों की चीजें दिखाई दे रही हैं जहां पास वो अलग अलग तरह के कपड़े टंगे हुए हैं साथ में यहां--

रोड दिखाई दे रहा है जहां पास बहोत से लोग खड़े हुए हैं सामने के साइड में एक बहोत बड़ा घर भी बना हुआ है।

इस फोटो में मुझे एक कार रिपेयर होते हुए दिख रहा है जहां पास एक इंसान इसे कार को रिपेयर कर रहा है।

साथ में यहां लोहे के पीने लगे हुए हैं यहां बहोत से जानवर खड़े हुए हैं और यहां तीन से चार लोग भी खड़े हुए हैं।

इस फोटो मे मुझे एक लकड़ी का फर्नीचर दिखाई दे रहा है और उसके बाहर अलग अलग तरह की डिजाइने बनाई गई है।

तीन से चार यहां गाड़ी खड़ी हुई है और बागल में--

इस फोटो में मुझे एक प्लेट आइसक्रीम दिखाई दे रही है जहां पास इसे एक कांच के बर्तन में लाया गया है।

और ये आइसक्रीम का अलग-अलग रंग हैं और यहाँ पास तीन से चार चम्मच रखे गए हैं।

इस फोटो मे मुझे एक बहोत बड़ा स्कूल दिखाई दे रहा है स्कूल के बाहर बहोत बड़ा एक ग्राउंड है।

और यहां पर एक छोटा सा पौधा भी लगा हुआ है कुछ लोग तालाब के अंदर--

इस फोटो पे मुझे एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है रेस्टोरेंट के बाहर एक शादी हो रही है और शादी के अंदर--